यहां पास सामने कुछ लोग जिम में जिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्सरसाइज --

यहां पास सामने एक कोको कोला का ब्रांडिंग --

जोकि नदी में हल्का पानी है और नदी के दोनों साइड बहोत सारे नुकीले पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।